ये इस्टेज पर कुछ लड़किया कत्थक नृत्य करते दिखाई दे रही है ये।

एक डॉक्टर बैठे हुए दिख रहे है ये डॉक्टर बैठे हुए हैं।